पेट्रोल टैंक का चित्र है और ये काफी बड़ा भी पैट्रोल टैंक है और यहां पे ठेला भी खड़ा हुआ है और यहां पे --

की इस चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ मेट्रो कंपनी के कपड़े और जूते चप्पल और बैग भी मिलते हैं।